नीचे ग्रीन कलर की मेज बिछी हुई है चारो तरफ मोमबत्ती मोमबत्ती ही जलाए गए हैं।

बहोत सारे गुलदस्ता हा दिखथे टेबल मा और ऊपर रैक मा भी बहुत सारे छोट छोट बॉक्स मन हा दिखथे।

गार्डन मा चबूतरा के बीच से बहोत बड़े पेड़ ह ।

यह फोटो माय एक बहोत बड़ी रेस्टोरेंट हरी--